इस फोटो में एक तालाब नजर आ रहा है जिसमे एक बोट चल रही है इसके साइड में एक बॉउंड्री बनी हुई है उसके पीछे-पेड़ पौधे भी लगे हुए है इसके आसपास दो लो लोग स्विमिंग कर रहे है।

चयर पढ़ी हुई है जो की खाली पढ़ी हुई है.

इस फोटो मे तीन बाइक नजर आ रही है उसके साइड मे एक स्विच लगा हुआ है उसके साइड मे कम्प्युटर रखा हुआ है और एक लेडिज बैठी हुए है।